आगे में एक काउंटर भी दिख रहा है काउंटर के टेबल नीले रंग के हैं।

कोने कोने में चेयर और टेबल भी दिख रहा है।

पास के टेबल के अंदर और ऊपर में कोल्ड ड्रिंक रखा गया है।

एक औरत भगवान के पैर छू रहा है ओ औरत साड़ी पहना हुआ है।

यह फोटो में मुझे चार ठो चेयर नजर आ रहा है।

कोने कोने में बड़े बड़े से पेड़ पौधे भी दिख रहा है।

आसमान भी बहोत साफ दिख रहा है।

रोटी के पास कुछ लाइट भी जलते हुए दिख रहा है।

तीन बच्चे फौजी के कपड़े पहने हैं और एक बच्चे प्रिंसेस के कपड़े पहने हैं।

इन बच्चों के पीछे दो आदमी भी दिख रहा है।

पास में एक बड़े से गेट दिखाई नजर आ रहा है गेट के पास बड़े से खंबे भी नजर आ रहा है।

इस कमरे में करंट की तार लगाया गया है।

यह फोटो में मुझे एक ए_टी_एम नजर आ रहा है।

ए_टी_एम के अंदर लाइट भी जला हुआ है।

फोटो में मुझे एक कमरा दिख रहा है इस कमरे में बहुत सारे आदमी भी है।

रूम में बड़ा बड़ा खिड़की भी दिखाई दे रहा है।

यह फोटो में मुझे क्रिकेट ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

यह फोटो में एक आदमी नीले रंग की और लाल रंग के बैग पकड़ते हुए नजर आ रहा है।

दीवार में स्टेशन कोड भी दिखाई दे रहा है।

इसमें दो पिलर भी देख रहा है यह दो पिलर में दो भगवान के पोस्टर भी लगाया गया है।

ये फोटो में मुझे गाड़ी के शोरूम दिख रहा है इसके पास एक जे_सी_बी दिख रहा है।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

इस फोटो में मुझे एक क्लास रूम दिख रहा है।

ये क्लास रूम में बहोत सारे बच्चे हैं ये बच्चे लोग लकड़ी से बना हुआ टेबल और डेस्क में बेर रहा है।

दुकान के कोने कोने में पोस्टर भी लगाया गया है।

मुझे एक तालाब नजर आ रहा है इस तालाब में काफी सारे लोग नहाने आए हैं।

फोटो में मुझे एक स्विमिंग पूल नजर आ रहा है।

इसमें बड़े बड़े पिलर भी लगाया गया है।